यह स्विमिंग पूल है या नहाने के लिए इसमें पानी भरा हुआ है इसमें अच्छी तरह ना सकते हैं बच्चे बालक |

यह पानी भरा हुआ है बहोत सारा पानी भरा हुआ है तालाब और पेड़ पौधे भी खड़े हुए है।